ये एक गार्डन का है जिसमें निचे हरी-हरी घास लगी हुई है। मिट्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीच में एक फाउंटेन लगा हुआ है जिससे पानी की बौछारें --

भूरे रंग की है इस पर एक दो शीशियां रखी है जो कि काले रंग की है |

और भी सामान इस कमरे में रखा हुआ दिखाई दे --

ये एक हॉल का दृश्य है जहाँ पर निचे का फर्श दिखाई दे रहा है जो की भूरे रंग की टाइलसो से बना हुआ है। यहाँ पर --

यह एक वाटर पार्क का दृश्य है जहाँ पर चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है। निचे का फर्श है जहाँ फर्श पर चार ठो गमले लगे हैं। गमलो में --

यह एक पहाड़ी इलाके का दृश्य है जहाँ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ इन पहाड़ों पर हरी-हरी घास दिखाई दे रही है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जिनकी --

लाइटें लगी हैं। बिजली के तार नजर आ रहें हैं। लॉज के बाहर एक कार खड़ी है जो की लाल रंग की है। निचे का फर्श है जो की हरे रंग का है। चारो तरफ बाउंड्री दिखाई दे रही है लोग दिखाई दे रहें हैं।

मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं रिक्शा खड़ा हुआ है। रिक्शा के बराबर में एक आदमी भी खड़ा हुआ है। ऊपर दुकानें बनी हुई हैं जिसके ऊपर जाने का रास्ता दिखाई दे --

पीतल की बनी हुई है। इनके आसपास बहुत सारा और भी प्रतिमायें रखी दिखाई दे रहीं हैं। पूजा का सामान रखा हुआ है।

एक मूरत सजी हुई हैं दीपक रखा हुआ है जो की दीपक जल रहा है इनके कंधे पर एक कपड़ा ल --

कार्टन रखें हुए हैं जिनमें सामान रखा हुआ है। यहाँ पर सामने एक आदमी है जिसने कैप लगाई हुई है जो कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा है। उसके आसपास सामान --

के पास एक रौशनदान दिखाई दे रहा है जिस पर जाली लगी हुई है।

बड़ी लाइटें हैं जिस जो जल रही हैं रात का समय है बिजली के तार नजर आ रहें हैं। बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद रंग से रंगी --

यह एक गार्डन का दृश्य है जिसमें कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं इनके हाथ में सफ़ेद रंग के कागज लगे हुए हैं आसपास कई सारे लोग हैं जो की खड़े हुए हैं।

ये एक कमरे का दृश्य है जिसमे दीवार दिख रही है दीवार नीले रंग की है इसपर --